उस स्कूल में एक पीले कलर की वैन भी खड़ी है।

उस लॉज में एक एल_इ_डी लगी हुई है।

का नाम बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून है।

टांगों में चोटे आयी हुई है और उन चोटों पर मलहम पट्टी की हुई है।

स्टोर है जिसका उद्घाटन हुआ है उस स्टोर का नाम शिवाजी मेडिकोज दवाइयां है।

मुझे इस चित्र में एक जिम नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक दीवार नजर आ रही है।

उस दीवार के बीच में एक गेट लगा हुआ है।

एक सरकारी इमारत के नीचे कुछ औरते लाइन लगाकर खड़ी हैं।

मैं इस चित्र में देख पा रहा हूं।

मैं इस चित्र में देख पा रहा हूं एक स्कूल है।

मैं इस चित्र में देख पा रहा हूं यह एक--

मैं इस चित्र में देख पा रहा हूं कि कुछ मुर्गे खड़े है।

कारखाना नजर आ रहा है उस कारखाने में--